अपने-अपने पसंद की साड़ियाँ खरीदते हैं ।

और ये शाम को छः बजे तक ही खुला रहता है ।

पीकर अपने-अपने घर चले जाओ |

हीरो बाइक की एजेंसी है जहाँ पर --

तरह- तरह की सब्जी मिलती है।

और यहाँ पर अपनी-अपनी बाइक की सर्विसिंग भी कराने के लिए --

ये एक जिम सेंटर है यहाँ पर --

और अपनी फैमिली के साथ जाकर पिकनिक मनाते हैं ।

अं जिम ट्रेनर भी --

और डीजल वाली डीजल पेट्रोल वाली पेट्रोल भरा कर --

अपना-अपना सफर तय कर --